जिस को लाल रंग की पट्टियों से सजाया गया है मॉल में नीचे हॉल के अंदर बहुत सारे व्यक्ति--

साथ में लेहरिया फ्रूट की खड़ी हुई है एक व्यक्ति साथ में--

यह दृश्य बहुत ही अद्भुत है ये एक खेल का मैदान नजर आ रहा है।